मैं एक इमेज को देख रहा--

ऊपर भी दो बल्ब जल रहे हैं।

और ऊपर में ग्रीन बॉर्डर हैं।

मैं एक इमेज को देख रहा हूं।

अच्छा लाइट लगा हुआ है और नीचे सब साफ सफाई है सब अच्छा है।

पूल है जो तो आसमान के रातों को--

इसमें एक बाइक खड़ा हुआ और बहोत लोग है।

और दूर में एक अलग सा दुकान है।

मैं एक इमेज को देख रहा हूं।

मैं एक इमेज को देख रहा--

मैं एक इमेज को देख रहा हूं।

सीमेंट से छत की ढलाई हो रही है।

मैं एक ईमेज को देख रहा हूं।

हर चीज स्टैंडर्ड के कपड़े के साथ--

जो कि गार्डन का इमेज है।

मैं एक इमेज को देख रहा--

मैं एक इमेज को देख रहा हूं।

जोकि डांस क्लास का इमेज है और यहां पे अगमुत्ते बच्चे लोग--

और यहां पे दो लड़के खड़े हैं।

बहोत अच्छा यह एरिया है यहां पे हर चीज एकदम --

और एक जिम है यहां पे लोग हैं।